यह पिक्चर एक बैंक का लिया गया है।

जिसमें बहुत सारे लोग हैं घूम रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं ।